ये बोर्ड लगे हुए हैं व्हाइट कलर --

उसके पीछे ब्लैक कलर कि बहुत सारी मशीनें रखी हैं।

उसके पीछे एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है।

फैन भी लगे हुए हैं व्हाइट कलर के ऊपर बहुत सारी व्हाइट कलर की लाइटें बल रही हैं।

वो ऊपर कुछ लाइटें लगी हुई है वाइट कलर की और साइड में एक बजरी का ढ़ेर पड़ा हुआ है।

ये ऊपर कुछ जंजीरें लटकी हुई हैं ब्लैक कलर की साइड में भी एक टेंपू खड़ा हुआ है वाइट कलर का।

यह एक बेडरूम का दृश्य है जहां पर एक बेड रखा हुआ है।

और पीछे एक ब्लैक कलर की अलमारी रखी हुई है।

सामने एक बड़ा सा फूलों का आसन लगा हुआ है साइड में वाइट कलर का--